मुझे काले रंग का बाल्टी भी दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पर बहुत सारा मुर्गी दिखाई दे रहा है।

मुझे पर एक ब्रिज दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर पर मुझे एक ट्रॉली बैग भी दिखाई दे रहा है।

उस ऑटो के अंदर कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं।

उसके बाद मुझे एक रोड भी दिखाई दे रहा है।

मुझे इस तस्वीर पर दो बड़े बड़े पोस्टर दिखाई दे रहा है।

सारा नाव भी देखने को मिल रहा है इस तस्वीर पर।

मुझे इस तस्वीर पर कई सारे कपड़े रखे हुए देखने को मिल रहा है।

उसके बाद मुझे वे कपड़े रंग बिरंगे को दिखाई दे रहा है।

उसके बाद मुझे सीढ़ी भी देखने को मिल रहा है।

मुझे रेलिंग भी दिखाई दे रहा है।